ये लड़का जो है एस_एम_एस बाल दुकान में काम करता है क्या बोलते हैं वहां पे कालीबाड़ी के पास वहां पे ये बाल वाल काटता है ये सब।

यह कंस्ट्रक्शन साइट है सब अपार्टमेंट रेडी होने का सीन है।

इसमें दो गो आदमी खड़ा हुआ है साइड मे बालू गिरा हुआ--

बगल में अंकल एगो डिब्बा में कुल्हर रखे हुए हैं यहां पे अंकल के पास लोग चाय पीने जाते हैं अगर चाय भी न रहा तो अंकल उन्हें दूध भी पिला देते हैं अपना।

यहां पे काली मां की पूजा होती है ये सब यह क्या काली पूजा के लिए यह मंदिर को क्या दीपावली के टाइम में बहुत ही शानदार सजाया जाता--